मार्कर इत्यादि उपलब्ध होते हैं और फाइलें बनाने के लिए फाइलें भी प्राप्त होती है।

डुप्लीकेट पुल बना कर के उस पर लोग निकल रहे है।

बस ट्रेवल्स दिख रही है और उसका --

इस वीडियो में एक मंच पर गिटार बजाती हुई महिला और दूसरी ओर माइक पर बैठी हुई --

और अपनी दुकान पर बैठकर फल बेचता है संतरा मोसंबी अनार सेब केला।

फोटु खिचता हुआ दिख रहा है।

और हरियाली दार पेड़ भी छायादार और फलदार वृक्ष भी हैं।

कुछ छायादार पेड़ भी लगे हुई हैं।

और उन मिठाइयों के उन्होंने रेट तय करके लिखकर के रख दिए हैं बहुत अच्छी मिठाइयां हैं।